यहा पर छट पुजा मनाया जा रहा है। इसमे बहोत सारे भागवान की मूर्ति बने हुए है और साइड मे गन्ने का बहोत सारे गन्नो का पंडाल खड़ा हुआ है। उसके साइड मे बहुत सारे पेड़ है।

यह एक मंदिर है मंदिर के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है जो हरे लड़का शर्ट पहना है और रेड रेड और व्हाइट कलर का दरवाजा भी है अ नीचे सीडी बना हुआ है।

ये एक पंडाल दिखाई दे रहा है। जिसमे बहोत तगड़ा बैनर लगा है और दो पहिये कि सीढ़ी है और साइड मे कुंडो की जिसमे लोग काम कर रहे है और दो लड़के उपर --

ये कोई भगवान जी का मंदिर है। यहाँ पे मंदिर के अंदर बहोत सारे लोग खड़े है।

हैऔर डांस कर रही है दो लड़कियां और बहुत ही सुंदर नजारा है और नृत्य पेश कर रही है।

यहाँ पे कई सारी कुर्सियां रखी हुई है और कई सारे और लोग रखे हुए हैं जो आपस में बात कर रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐ.सी भी लगे हुए हैं।